बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

यहां बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पहलवान का स्टैचू है।

उसी के पीछे दो पेड़ हैं।

मैं देख पा रहा हूं कि यहां एक कॉलेज है यहां एक बैनर लगा है।